कुछ लिखा हुआ है | वाहन ऋण लिखा हुआ है | बहुत सी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है |

ब्लू कलर की नीले कलर की शर्ट एक पीले कलर कि शर्ट एक ऑरेंज कलर की शर्ट --

ये लोग चर्च में हैं | चर्च के बाहर हैं और चर्च की ये चार महिलाएँ दिख रही हैं जोकि --